और एक लाइट जल रहा है। नया मकान है।

और बैग है। इधर --

ऑफिस में सब लोग अपना काम कर रहा हैं। एक-दुसरे से बात कर रहा हैं। लड़का फेस --